सामने एक फोटो दिखाई दे रही है जिसका दृश्य बहोत ही सुंदर अति सुंदर दिखाई दे रहा है जिसने बनाने वाले ने भी क्या चीज़ बनाई है।

सीढ़ियों में कुछ चप्पले पड़ी हुई है दिखाई दे रही है एक औरत खड़ी होती दिखाई दे रही है एक बैठी हुई औरत दिखाई दे रही है आदमी अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा है।

कुछ टेप रखी हुई है कोई घड़ी दीवार घड़ी दिखाई दे रही है ऊपर एक पंखा चला रहा है जो बहुत ही सुंदर दृश्य में नजर आ रहा है।

कितना प्यारा दृश्य दिखाया गया है बहुत ही खूबसूरत दृश्य दिखाया गया है इतना सुंदर दृश्य वो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं दे --

कुछ लड़कियां भी खरीदती हुई दिखाई दे रही है कुछ पोस्टर लगे हो भी दिखाई दे रहे हैं पन्द्रह बैनर लगा हुआ वो भी दिखाई दे रहा है।

मुझे सामने कुछ आदमी दिखाई दे रहे हैं।

एक बहोत ही प्यारा तस्वीर दिखाई दे रहा है बहोत सुंदर तस्वीर दिखाई दे रही है अच्छी दृश्य नजर आ रहा है बहोत ही खूबसूरत तस्वीर दिखाई दे रही है।

एक रोड सी गुजरती हुई दिखाई दे रही है बहोत है पोस्टर लगा हुआ है ताल छापर उसे पे लिखा हुआ है ताल छापर अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है ताल छापर।

बनाया गया एक स्विमिंग पूल बनाया गया--

समान अलग अलग प्रकार के कबर्ड में रखा हुआ सामान है बहुत ही खूबसूरत तस्वीर दिखाई दे रही इतनी प्यारी तस्वीर --